चौक में बहोत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

रैक में कई कई छोटी डब्बी बड़ी डब्बियां भी दिख रही हैं।

स्टीकर पर केक और पान के स्टीकर दिख रहे हैं।

आस पास में कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

सामने की ओर एक बड़ीसी दीवार दिखाई दे रही है।

उपर की ओर पंखा दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक बड़ा सा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर कई सारे कुर्सियां दिखाई दे रही है।

छत पर लोहे के सरियें दिखाई दे रहें हैं।